यहाँ पे एक बेनर लगा हुआ है जो कि ब्लू कलर का जिस पे व्हाइट कलर से लिखा हुआ है रेड कलर भी है इसमे और इसमे नेवी ब्लू कलर भी रहता है और यहाँ पे एक शटर है जिसमे दो ताले लगे हुए है और बहुत सारे बेनर लगे हुए है।

यहाँ पे थोड़ा येलो कलर दिखाई दे रहा है एक पे येलो कलर दिखाई दे इस अ पिंक और चोक्लेटी कलर दिखाई दे रहा है और बहुत कुछ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे कांच में एक कांच दिखाई देखे दे रहा है। उसके साइड में एक ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे साइड प्ले में ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है। यहाँ बहुत खूब सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर बहुत सारे पेड़ दिखाई दे है। और निचे लाइट पिंक कलर दिखाई दे रहा है। हल्का ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है । और बहुत सारे कलर्स दिखाई दे रहे है। जैसे येल्लो है ब्लैक

यहाँ पे पुरी दिवाल पे रामा पुरे बेनर पे रामा कलर दिखाई यहा पे एक बैनर लगा है जो की ब्लू कलर ओर वाइट कलर जिसे एक पिंक कलर उनका का एक लडकी बनी हुए हे यहा पे का एक दिवाल बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा हे बहुत सारा यहा पे बहुत अँधेरा दिखाई दे रहा हे।

यहाँ पे बहुत सारे छोटी-छोटी ग्रास दिखाई दे रही है और बहुत सारी चीज़े दिखाई दे रही है।

लोग दिखाई दे रहै है बोहत सारे पेड़ दिखाई दे रहै एक ग्रीन कलर का डस्टबिन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे व्हाइट ग्रीन और ऑरेंज कलर के बलून्स दिखाई दे रहै है।

सारी चीजे दिखाई दे रही है यहा पे एक मशीन दिखाई दे रही है यहा पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है काच दिखाई दे रहा है।